ये एक फुट ट्रैक है यहां पर कोका कोला वगैरा हर आइसक्रीम वगैरा यहां सब मिलती है और यहां पर बहोत अच्छा है।

बहोत सारे ए_सी वगैरा भी लगे हुए हैं उसके बाहर --

उसकी एक तो बाइक भी वहां खड़ी हुई है एक कार खड़ी हुई है एक बाइक और खड़ी हुई है वहां पे दो आदमी जा रहे है और ये दो मंजिल का बना हुआ है।

और यहां पे बहोत सारे लोग लेकर खड़े हुए हैं कोई स्पर्श कर रहा है कोई क्या कर रहा है कोई खड़ा हुआ --

ये एक होटल है यहां पर एक आदमी जलेबी बना रहा है यहाँ पे सिलेंडर --

गमले वगैरा भी लगे हुए हैं और ये बहोत अच्छे है दिख रहा और यहां पे वहां कपड़े भी सुख रहे--

हैं इस कॉलेज को ये तीन चार मंजिल का बना हुआ है बाहर एक कार भी पड़ी हुई है।

और उसके पास बच्चे भी खेल रहे हैं और वहां पे बैठने के लिए कुर्सी भी लगा रखी है ये गार्डन बहुत साफ सुथरा है और बहुत येपेड़ पौधे भी लगे हुए --

ये बहोत सारी हरी मिर्चियां है हरी मिर्च बिखेर रखी है हरि मिर्चियों को साफ कर रहा है।

जो बेकार उसको भटक रहा है और वहां पे आलू की एक टोकरी भी रखी हुई छाट रहा है और हरी मुझे बहुत अच्छी नजर आ रही है।

यह एक फ्री रुबर हेल्थ कैंप लग रहा है और यहां पे निशुल्क स्वास्थ्य शिविर एवं ब्लड प्रेशर की जांच होती है।

है और नीचे यहाँ पे एक महिला के फोटो छाप रखी है और यहां पर दो तीन बाइक वाले जा रहे हैं।

शर्मा आयुर्वेदिक मंदिर है ये मध्य प्रदेश में है यहां पे आयुर्वेदिक की दवाइयां वगैरह मिलती --

यह एक प्राचीन शिव मंदिर है ये मंदिर दुहु में--

बहुत ही अच्छा फास्टफूड वगैरह और आदमी खड़े हुए हैं फोन वगैरह यहां पे फास्ट फूड चाऊमीन पिज़्ज़ा पताशे वगैरह सब मिलता --

पहाड़ पहाड़ दिख रहे हैं और यहां मकान भी बन रहा है साथ मे बड़े बड़े बिल्डिंग यहां पे लगे पे लगे हुए --

पत्ता गोभी है और अलग सलाद भी है और चिकन तंदूरी तंदूरी बहुत अच्छा लग रहा है चार उसके पिस है और उसको फल के ऊपर से रखा हुआ है।

नीचे और वहां पर और भी डीमार्ट वगैरा कोटक बैंक भी हैं और खूब सारे हैं नीचे खूब सारे कार वगैरा खड़ी हुई हैं वहां पे एक ऑटो भी जा रहा --